वह बहुत बड़ा मकान है और बहुत सारे --

और लोग खड़े है चढ़ने के लिए और बहुत अच्छा है।

और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और पेड़-पौधे बड़े-बड़े है इनका --

और कुछ अंदर है जो पैसे निकालने के लिए गए हैं ।

ये दुकान बड़ा है एक लोग केश कटिंग कर रहे है।

और बहुत सारे मात्रा मे लोग आके मेला के लाभ उठा रहे हैं |

यह एक होटल नज़र आ रहा है होटल मीनू --

वो खेत के आगे एक पेड़-पौधे हैं जो बहुत बड़े-बड़े हैं और --

अपना लेबर अपना काम करते हैं और ये घर बन ही रहा है और बहुत अच्छा दिखाई दे --

हो रहा है ये बिल्डिंग नजर आ रहा है ।

यह एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है जो तीन तल्ले का है और इसके नीचे --

और जो हरा -भरा दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सुंदर है और पहाड़ बड़े-बड़े मात्रा में है ।

जो बांका बाजार धार्मिक एवं पाठ्य पुस्तक के --

और इसके बगल में पेड़-पौधे पत्ती हरा-भरा दिखाई दे रहा है।

एक लकड़ी से घिरा हुआ है चारो बगल --

और उसके बगल में पेड़ पौधे हरा भरा दिखाई दे रहा है ।

और यह वृक्ष बहुत सुंदर है इनका पत्ती हरा-भरा बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं।

और दो के हाथ में पर्स है और पर्स से ए.टी.एम. कार्ड --

वह एक मस्जिद नजर आ रहा है ।

भगवान नजर आ रहे हैं उनके बगल में कमंडल --

बहुत सारे पूजा करने की बर्तन नजर आ रहे हैं ।